जैसा कि आपके सामने एक स्टूल नजर आ रहा है और उसपे काफी चेयर वगैरा लगी हुई हैं और एक सामने एक ड्राइंग नजर आ रही है जिसपे ब्लैक बोर्ड --

जैसे कि सामने एक गाड़ी नजर आ री है गाड़ी एक लाइन में तीन चार खड़ी हुई है।

एंड काफी डेकोरेशन की हुई है काफी लेडीज एंड जेंट्स खड़े हुए हैं।

डमियां दिखाई दे रही हैं जिन्होंने अलग अलग कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

बोला जा रहा है।

जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है --

और उसके लिए आस पास में कई पेड़ भी नजर आ रहे हैं सामने पोस्टर लगे हुए हैं।

और सामने एक व्यक्ति जो की साइकिल लेता जाते हुए दिखाई दे रहा है।

और जैसे की पंछी के पंछी देख सकते हैं ये येलो कलर के है।

आस पास के जो व्यक्ति हैं आस पास से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और इसके पास काफी एक बाहर सीढ़ी दिखाई दे रही है एक लाईटों का भी एक खंभा दिखाई दे रहा है छत इसकी काफी डैमेज दिखाई दे रही है।

सामने क क्लब बना हुआ है जिसमें काफी लाइटे भी नजर आ रही हैं काफी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है।